ग्राम गोलू ज्वैलर्स हैं।

जिसमें लाइट की रोशनी आ रही है।

उस लड़की ने लाल रंग का सूट पहना हुआ है।

जिसका नाम विमल स्टोर --

जिस फोटो में बहुत सा--

एक लड़का इस में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम बंज एंड फ्रोजी--

गांव का दृश्य दिखाया गया है।

भैंसे आती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखा--

सुंदर दिखाई दे रहा है।

जिम की फोटो दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक मंदिर की फोटो दिखाई--

यह बहुत ही सुंदर है।

इसमें अलग अलग तरह के--

खाने की चीजे रखी हुई दिखाई दे--

क्रिकेट खेल रहे हैं।

जिसका नाम बिंदु जनरल स्टोर है यहां जोकि--

किड़ली आदि के ब्रांड मिलते--

अलमारीयो की फोटो दिखाई गई है।

एक घर बनाते हुए की फोटो दिखाई पड़ रही है।